मार्केट में बहुत ही ज्यादा लोगों की भीड़ हमें दिखाई दे रही है।

ग्राउंड में वृक्ष भी लगे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं।

ग्राउंड पूरा खाली है इसमें हरी हरी घास उगाई हुई है।

यह दृश्य हमें किसी शाॅप का दिखाई दे रहा है।

इस यह तस्वीर हमें किसी शॉप की दिखाई दे रही है।

इस शॉप में हमे बहोंत सारी--

इस दृश्य हमें चार ट्रैक्टर दिखाई दे रहें हैं।

इसके साथ में हमें एक और छोटी साइकल भी दिखाई दे रही है।

यह दृश्य हमें किसी दुकान का दिखाया जा रहा है।

इस दृश्य में हमें एक खाली ग्राउंड नजर आ रहा है जिसमें बहुत सारे लोग खेल रहे हैं।

ग्राउंड के आस पास हमें बहोत सारे हरे भरे वृक्ष भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में हमें एक तालाब नजर आ रहा है।

इस दृश्य में हमें एक पूल दिखाया गया है जिसमें एक हाथी की मूर्ति--

इसके पास कुछ छोटे अपार्टमेंट भी बने हुए हमें दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में हमें सूरज भी दिखाई दे रहा है।